यहां पे एक बोर्ड है जिस पे लिखा है ओशो हिमालयन ध्यान मंदिर रामलीला--

रेड कलर की डाली है और है।

एक झंडा भी लगाया हुआ है बाहर गुलदस्ते है उनमें फूल लगे हुए है व्हाइट --

साइड में एक लाइट भी है और पेड़ भी है हरा भरा ऊपर आसमान में बादल हैं पीछे पहाड़िया हैं।